इस पर एक पेम्पलेट लगा हुआ है इस पर पीले कलर से कुछ बना हुआ है।

और मुझे पिंक कलर का एक घर दिखाई दे रहा है। कुछ खजूर के पेड़ दिखाई पड़ते हैं। पाल्म ट्री --

है उस पर एक कार चल रही है और पेड़ लगा हुआ है और यहाँ एक कैरट रखी हुई है। उसमें कुछ सामान रखा है। एक टेबल पर अ कॉपी और पेन रख --

वाटर पार्क की तरह दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारा पानी है अंदर की तरफ बहुत सारी प्लेईंग अ प्लेईंग अ झूले हैं और बहुत सारा पानी यहाँ पर बह रहा है।

यहाँ बहुत सारे पत्ते हैं वो सब ग्रीन कलर के हैं बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं और उन पहाड़ो पर भी घास फैली हुई है।